सारे लोगों ने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हैं और बोर्ड पर लिखा है स्टेट इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर --

इधर रेड कलर का घर है।

उसके ऊपर ब्लू एंड व्हाइट कलर का छपरा बांधा हुआ है और नीचे एक कट्टा पड़ा है और --

ब्ल्यू कलर की शर्ट पहनी है और येलो कलर की पैंट पहनी है और सामने एक दीवार पर एक ए_सी लगा रखा है।

इधर एक सोफा लग रखा हैं उसके ऊपर एक बैग पड़ा हैं और स पास के सोफे के पास एक टेबल पड़ी हैं।

अलग अलग तरह की दवाईयां और काउंटर पर--

कार के कार है और उसके क्रेन के जस्ट पीछे सड़क सुरक्षा ऑनर भी लिख रखा है।

यहां पर टमाटर पड़े हैं कुछ कुछ हरे रंग के हैं कुछ कुछ हल्के लाल रंग के और कुछ पूरे लाल रंग के हैं।

और एक तरफ कोने में ब्लैक कलर का कांच का गेट है और इधर हॉल की तरफ एक व्यक्ति --

इधर बहोत सारी आंटियां खड़ी हुई है जिन्होंने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए है किसी ने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी है।

व्हाइट कलर की बड़ी सी बिल्डिंग है जो बहोत अच्छी नजर आ रही है वहां पर गाड़ियां भी खड़ी--

और आटा चक्की के पास एक दीवार पर एक--

इधर एक बोर्ड लगा रखा है और उस पे पीटेज कंप्यूटर एजुकेशन --

अलग अलग जगह रख रखे हैं और ये अच्छी सी दुकान लग रही है।

ये एक खेलने का मैदान लग रहा है जहां पे बहोत सारे बॉयेस खड़े हैं और उनके नीचे फुटबॉल रख रखी है।

जगदेव वाला नाम से एक स्टेशन लग रहा है जहां पर एक आदमी व्हाइट टी शर्ट पहने हुए खड़ा है और--